ये जो पहाड़ी इलाका है और पहाड़ से गिरता हुआ ये पानी है ये जो है एक झील टाइप का पानी है यह बहुत कम जगह जो है देखने को मिलता है और जहाँ भी मिलता है लोग वहाँ --

ये पिक्चर है। यहाँ जो नव नौ ग्रह होते है। वही नव ग्रह के जो है अलग-अलग मूर्ति बनाये गए है और उन्ही का पूजा जो है हम हिन्दुओ धर्म को मानने वाले जो भी लोग है वो --